ये बरामदा पे जो है बच्ची सब बैठी हुई है बकरी है |

किच्चर है पुरा किच्चर किच्चर हो च --

वहाँ दो मवैसी बांधे हुए हैं एक ठो भैंस है एक ठो जो है पररु है।

देख रहे हैं बहुत जगह-जगह वृक्ष सब लगा हुआ है पानी है बगल में कुछ आदमी यहाँ बगल में खड़े भी हैं देख रहे हैं।

उस पानी के बीच में एक बोल्डर है।

बारिश होने का संभावना भी है।

उसके बाद खिड़की शीशा का लगा --

इसके सर्फ एक्सेल साबुन है फार्च्यून का तेल है लाइफबॉय साबुन है।